एहाँ ए जगह कोई प्रोग्राम होत हे अउ प्रोग्राम में बड़ा -सा खुर्सियाँ इसे स्टेज निम् और दिखत हे ।

ए में लोहा से बने से कुछ अउ तार दिखत हे खम्भा भी हे बांस का कुछ बनल है पौधा भी हे।

अउ एकर नीचे दीवाल का नीचे कोई नहीं हे खाली-खाली हे ।

अउ ऊपर में नहीं हे ज्यादा पत्ता झड़ जात हे अउ छोटा -छोटा झाड़ी भी हे।

के ह किराना दुकान हवे दुकान में बहुत सारा सामान रखल हे ।

इहा फ़ोन पे भी चले सामने में रखाइसे मूंगदाल है एक झन बैठे से बेचे ब --

दू ठो कटोरी में डालल हैं ।

आदमी भी हे कोई साईकल में बैठिस हे अउ बहुत सारा आदमी हे एक झे अंकल चलत हे उ हाथ में कुछ पकड़िस हे काला थैली में --

अभी दिखत हे पीछे साइड दीवाल भी हे खाली -खाली हे ।